प्लेटें कटोरा कटोरी रखी हुईं हैं।

यहां पे एक घर बना हुआ है।

यहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है।

पत्तल भी पड़े हुए हैं और--